यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पर टेंट लगा हुआ है।

और यहाँ पर एक घर भी है।